हमे यहा पर बहुत सा बड़ा एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जो की बास्केट बॉल का ग्राउंड नजर आ रहा है और ये बहुत ही बड़ा दिख रहा है और हमे यहा पर बहुत सारा रेती दिखाई दे रही है। और हमे यहा पर एक खाली सड़क दिखाई दे रही है और हमे यहा पर खाली जमीन नजर आ रही है।

जो की बहुत दूर तक जाती हुई नजर आ रही है और हमे एक और बिल्डिंग दिखाई दे रही जिसका कलर हमे सफ़ेद दिखाई दे रहा है और हमे यहापर बहुतसारे पेड़ दिखाई दे--

और हमे यहाँ पर एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ पर बहुत सारे गाड़ी दिखाई दे रही है और हमें यहाँ पर एक की एक कार दिखाई दे रही है और हमे यहाँ पर एक साइकल से जाता हुआ एक बच्चा नजर आ रहा है।